और ये जो है ये बैग लेकर खड़ी है कुछ थालियां लेकर खड़ी हुई है।

इसमें बेकरी स्वीट्स चार्ट ये सब मिलता है फैमिली रेस्टोरेंट है।

और ये जो हैं ये दोनों फोटो लेने के लिए बैठे हैं।

और उसमें काले रंग की और लाल रंग की ग्रे कलर की और अलग अलग तरह की कारे खड़ी है और यहाँ पे बहोत सारे जो लो --

और कुछ आदमी जो इन्हें खरीदने आये हैं कुछ लोग यहां पे जो है बेच रहे--

और बच्चे जो हैं अलग अलग तरीके की फ्रॉक शॉर्ट्स सब बहोत सारे अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हुए--

यहां पे चेयर रखी दिख रही है और दो चेयरे --

बाकी कुछ चेयरें हैं जो बहुत सारी खाली पड़ी हुई हैं और एक इंसान इन लोगों का फोटो ले रहा है जो सा--

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक वाटर पा--

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि एक तालाब है और तालाब में कुछ लोग जो--

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि ये कुछ--

और एक आदमी दो तीन आदमी जो है वो अंदर जा रहे हैं कुछ पेड़ है कुछ घांस लगी हुई है।

और कुछ आंटियां जो है वो जा रही है वो लेने के लिए और कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं।

और ये जो है यह पूरा एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में आप--

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक मूर्ति है मूर्ति के साइड में दो खरगोश बैठे हुए हैं।